श्री श्याम फैमिली ढाबा और इसके बाहर एक बै--

और काफी ही कोई मशीन भी है मसाला बनाने के लिए

और इस फोटो मे एक ये लड़का दिखा रखा है।

और यहां पर जो है वो कुछ लेडिस है वो मैट बि--

और नीचे काफी सारे सूखे पत्ते भी गिरे हुए हैं।